यह पोस्टर है। पोस्टर में लिखा हुआ है ज्ञान हाजीपुर --

यहाँ के प्रमुख कार्य मुर मूर्ति बना हुआ है और --